यहाँ तस्वीर एक लाइब्रेरी की दिखाई दे रही है जहाँ पर--

मिठाईयाँ रखी हुई हैं जो की काँच के अंदर रखी हुई हैं।

यह तस्वीर एक पार्क की दिखाई दे रही है | यहाँ पर आस-पास हरी-हरी घासे --

यह तस्वीर एक सब्जी की दुकान की है जहां पर --

यहाँ तस्वीर एक केक की है जो कि --

जहाँ पे कुछ पौधे लगाए गए हैं और कई पेड़ भी है यहाँ पे।

नाम जिला ग्रामण विकास अभिकरण गोपालगंज है।

यहां तस्वीर एक मेले की है जहां पर कई --

यहाँ तस्वीर एक कपड़े के शोरूम की नजर --